जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं इस तस्वीर में आपको बहुत सारे औरतें दिख रही हैं जो खड़े--

एक आदमी को ठीक कर रहा है साइड में बाइक की पार्क किये गए है स्कूटी भी है और आगे जाकर और ऑटो है जो पार्क कय गए किए गए।